यह किसी शहर का सड़क दिखाई दे रहा है जहाँ पर पुलिस फाॅर्स और बजाने वाले और बच्चे खेल मनोरंजन देखते हुए--

यह किसी शहर या गांव में छोटा सा दुकान दिखाए दे रहा है जहां पर एक बड़ा बिजली खम्बा लगा है और इन लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर अपने आवश्यक सामग्री ले रहे हैं।

यहाँ किसी शहर का मंदिर दिखाए दे रहा है जहाँ पर बोहत सारे दर्शकगण दिखाए दे रहे हैं।

यह किसी शहर का सुपरमार्केट स्टोर दिखाए दे रहा है।

यह किसी शहर का सड़क दिखाई दे रहा है सड़क के किनारे बहोत से गाड़ियां खडी हुई है बहोत --

चार पाँच व्यक्ति बैठ कर नास्ता करते हुए दिखाई दे रहे है।

जिसको लेने के लिये व्यक्तियाँ लाइन लगा कर खड़े हुए है और फूलों की बहोत -बहोत बोरियाँ रखी हुई है।

जहाँ छतरी एंटीना टी_वी बल्ब इत्यादि सामग्री है जहाँ एक महिला जाते हुए भी दिखाई दे रही है।

यहाँ किसी शहर का एक छोटा-सा गार्डन दिखाई दे रहा है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पड़े बड़े-बड़े है और एक खेलने के लिए छोटा-सा सीढ़ी खि--

यहाँ भी किसी शहर के किसी बिल्डिंग बनाई जा रही है।

यहाँ किसी शहर में संगीत स्कूल दिखाई दे रहा है जहाँ पर विभिन्न लड़कीओ का भीड़ लगा है जो की यहाँ एक कलर का ड्रेस लगा है।